पौधे है उसके बाद है।

शादी उदी है गाँव का सीन है। उसके बाद है।

मेला लगा हुआ है इसके बाद झिंझिर से झूला बना हुआ है।

अे फूल फूल अच्छे-अच्छे दिख रहे हैंउसके बाद --

और कोई खरीद रहा है फूल का बहुत सारे आदमी हैं।

सैलून का दुकान बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहा पे।

शाम होने व शाम का टाइम है इसलिए शायद --

पौधे हैं हरे हरे उसके बाद सड़क दिख रहा है उसके बाद --

गाड़ी उडी है बहुत सारे गाड़ी है |

दुकान अच्छा सजाया से गया है दिखने मे अच्छे लगते है।

प्लास्टिक कलर का प्लास्टिक है और कटुआ है इसमे--

किताब का दुकान है बुक है।

और किताब का खरीददारी शायद अच्छी तरह से हो --

बहुत सारे भीड़ भी है थोड़ा-थोड़ा रास्ते --

बहुत सारे भीड़ है। काज करने --

पहना हुआ हाथ मे चूड़ी है।

और शायद बहुत सारे कलम मिलते हैं।